इसके बाहर एक मोटरसाइकिल खड़ी है इस होटल का रंग सफेद कलर का है।

ये आस पास खूब सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

ये बच्चों का एक स्कूल है जहां पे बच्चे पढ़ाई कर रहे है और बच्चे अपनी छोटी छोटी टेबलों में बैठे हुए हैं।